दूर पीछे में हमे एक बहुत बड़ा बिल्डिंग दिखाई देने मिल रहा है।

इस पिक्चर में हमें एक सुंदर सा घर का बाहर दिखाया गया है यहां हमें सामने पर हमें गाड़ी का आधा हिस्सा दिखाई देने मिल रहा है।

ऊपर का वॉल पर हमें लाइट्स दिखाई देने मिल रहा है घर के खिड़कियां दिखाई देने मिल रहा है।

घर का अंदर का आधा सा हिस्सा दिखाए देने मिल रहा है।

सामने पर हमें वॉल्स भी दिखाई दे रहा है और वॉल्स के अंदर में अमे सायद चाय की पत्ते है क्या सायद से वो दिखाई दे रहे हैं।

इस पिक्चर में हमें बहोत सारे लेबर्स दिखाई देने मिल रहा हैं जो काम करने लिए आए हुए है यहां पर--

सामने में एक टीना का घर भी दिखाई दे रहे है।

यहां हमें टेबल के ऊपर एक मशीन दिखाई देने मिल रहा है जो सामान को वेट करने के लिए रखा गया है।

दुकान के ऊपर के बैनर पर टिप्सी टेली लिखा हुआ है और दूसरे दुकान के बैनर पर कैफ लिखा हुआ है।

सभी लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं रंग बिरंगी फ्लावर्स हमें देखने को मिल रहे हैं और सभी फ्लावर बस्ती पर मौजूद है।

इस पिक्चर में हमें एक बिल्डिंग पर बने हुए गुन का फोटो दिखाई दे रहे है।

जहां ऊपर के बैनर में लिखा है अमरान फिर थोड़े नीचे में लिखा है वीरेंद्रा सर्जिकल एंड मेडिकल शायद यहां में मेडिकल का बहुत समाने मिला जाता है।

पीछे पर भी गर दिखाई देने मिल रहा है।

सामने पर हमें एक लेबर दिखाई दे रहे हैं और बिल्डिंग के सामने हमें ईंटे दिखाई दे रहे हैं।

उसका अंदर बहुत सारे समाने दिखाई देने मिल रहा है सामने का दुकान भी खुला हुआ है।

इस पिक्चर में हमे एक सुंदर सा शॉप दिखाया गया है जहां पे हमे बेचने के लिए बहुत सारे ट्वायलेट्स दिखाई दे रहे है।

यहां पर हमें बहुत सारे मेडिकल इक्यूपमेंट देखने को मिल रहा है।

बहुत सारे फ्लैग लगाया हुआ है।

इस पिक्चर में हमें एक सुन्दर सा मोर देखने को मिल रहा है जो कि एक लकड़ी से बनाया हुआ वाल पर बैठ के है और इस वाल में लकड़ी से बनाया हुआ वाल पर बहुत सारे कपड़े दिखाई देने मिल रहे हैं।

का पेड़ भी दिखाई देने मिल रहा है इस मोर का कलर ब्लू और ब्राउन दिखाई देने को मिल रहा है और थोड़ा व्हाइट भी लगा हुआ है।

व्हाइट ईटा के पीसेस भी दिखाई देने मिल रहे हैं इस मशीन से हमें बहुत सारे वायर्स निकलते हुए दिखाई देने मिल रहे हैं।

इस स्टेज को रंग बिरंगे कपड़ों से सजाया गया है।

घर के विंडोज़ भी दिखाई दे रहे हैं थोड़े मोरे।